पुल हैं पुल की दीवार हैं जो उसके नीचे से नदी बह रही हैं| काफी बड़ी हैं| दूर तक नदी हैं। आसपास जंगल हैं| आसपास काफी सारे पेड़ हैं| खड़े हुए हैं।

और बोर्ड लग रहा है शायद एल_ई_डी वगेरा यहां पे मिल रही हैं और शो शॉप है यहाँ पे मतलब काफी बड़ी जो बंद है आस-पास इसके घर हैं।

ईंटे टूटी पड़ी हुयी है और सामने कच्चा है जहाँ कुछ रेत पड़ा हुआ है और कमरे है कमरों में गेट लगे हुए है पेड़ वेड है ऊपर वायरे --

जो शायद काफी बड़ा होटल या किसी फिर एक मॉल लग रहा है जिस में खाने पिने का सामान मतलब जेसे आटा वगेरा शायद इसके पेकेट रखे हुए हैं जिस अम अम बड़े-बड़े ड्रम है जिस में कुछ सामना रखा हुआ है।

ऊपर घण्टी लगी हुई है टिन शेड पड़ा हुआ है। एक झण्डा लगा हुआ है और एक येलो कलर का दीवार लग रहा है जिसमे पिंक कलर का गेट लगा हुआ है।

आसपास घर भी हैं और आसपास उसके पेड़ भी हैं जेसे निम का पेड़ खड़ा हुआ है।

मतलब कुछ ऐसा है न घर या मूर्ति टाइप है कुछ अ मतलब मंदिर बना हुआ है जिसके अजीब टाइप का है जो कि गोल है एक जगह तो गोल है ऊंची सा है।